वेह छोटा बच्चा भी बैठा हैं।

पिंक कलर के फूल लग रहे हैं।

इसके पास एक गमले भी हैं।

कांच के रैक बने हुए हैं उनके अंदर गले के सेट रखे हुए हैं।

यहां आसपास पेड़ नज़र आ रहे हैं।